यह एक रिफाइनरी दृश्य है। यहां की सड़क है। पास में एक जे_सी_बी खड़ी है। जे_सी_बी जो कुछ भर रही है।

और कुर्सियां पड़ी है सभी खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे पीछे भगवान की मूर्ति लगी हुई है इधर साइड एक और मूर्ति लगी हुई है।

ये मशीन है जो जैको पे खड़ी है क्रेन हैं बहोत ही बड़ी--

और उधर सारे लोग कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं।